के बाहर एक कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है व्यक्ति के ठीक सामने एक बाइक खड़ी है।

इस पे कुछ टांगा गया है जो खाने वाला सामने एक व्यक्ति है।

दुकान है दुकान में बहुत सारे हैंगर में कपड़े टंगे हुए हैं कपड़े रंगबिरंगे ऊपर रैक पर भी सामान रखा हुआ--

यहां सीमेंटेड रैक है रैक पर बहुत सारे अनेक प्रकार के सामान रखे गए हैं पीछे की दीवार वाइट है बगल की दीवाल कलर की गई है।

अ अ सड़क के दोनों किनारे अ अ पर गमले में अ पौधे लगे हैं पेड़ पौधे भी लगे हैं बहुत सुंदर।

म लड़ने के ठीक पीछे दरवाजा खिड़कियां भी हैं।

पानी कलर वाइज दिख रही है चारों तरफ पेड़ पौधे भी हैं।

भी ब्लैक ही है सामने बोर्ड लगाया बोर्ड पर आर_सी_एफ कुछ लिखा गया है सामने दीवार के ऊपर भी बोर्ड लगा है उस पे भी कुछ लिखा गया है उसमे नीचे--

चौतरा बना हुआ है प्रतिमा के पीछे भी दीवाल है यह भगवान--

राम की भी प्रतिमा हो सकती है गौतम बुद्ध की भी हो सकती है।

एक तरफ पेड़ पौधे भीं दिखाई दे रहें हैं दूसरी तरफ अम अम--

यहाँ बगीचा है बगीचे में झूले लगे हैं झूले जिस पर बच्चे झूलते हैं सड़कते भी हैं चारों तरफ से पेड़ पौधे हैं।

नी नीले रंग के हैं कुछ व्हाइट भी है नीचे--

कमरे को कमरे को कलर किया गया है एक तरफ दरवाजे हैं दूसरी तरफ--

बाइक के पीछे दो गमले रखे हुए हैं गमले में बहुत सारे पौधे लगाए गए है।

पेड़ भी दिख रहा है बाइक के ठीक सामने दरवाजे भी दिख रहे हैं।

एक मैदान है मैदान खाली है खाली मैदान में हरि हरि घास उगी है।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं एक तरफ मैदान की दूसरी तरफ--

कुर्सी मेज लगे हुए है दीवार पर बल्ब भी जल रहे है उपर फैन और बल्ब दोनों लगे हुए है कमरे में खंबा भी है खंबे कलर वाइज़ है।

सामने बहुत बड़ी बड़ी मॉल भी हो सकता है मॉल पे--

ये बहुत बड़ा सा हॉल है हॉल में चारों तरफ से दीवार पर व्हाइट और--

दुकान है दुकान में बहुत सारे शोकेस में सामान रखे गए हैं रैक पर विभिन्न प्रकार के सामान रखे गए हैं सामने एक लेडीज बैठी हुई है।

ये चारों तरफ समान ही समान हैं अनेक प्रकार के यहां सामान रखे गए हैं।

सामने तालाब है नदी है नदी के किनारे--

यह दुकान है दुकान में जो व्यक्ति खड़े हुए हैं व्यक्ति के पीछे से कुर्सी है कुर्सी को--

कुछ समान टांगे भी हैजो हैंगर के सहारे टांगे हुए हैं।

सामने बोर्ड भी लगा हुआ है वाइट बोर्ड भी है यहां पे ।

अनेक प्रकार के सामान रखे गए हैंजो छोटे-छोटे गत्ते में रखेंगे ऊपर फैन भी चल रहा है दुकान के ठीक सामने एक व्यक्ति बैठा है व्यक्ति --

उनके सामने एक मेज है व्यक्ति कुर्सी पे बैठा मेज पर भी कुछ सामान रखा गया है।

सामने सड़क के किनारे एक बिल्डिंग बनाई जा रही है बिल्डिंग में बहुत सारे--

पास की गल्ली में लगाए गए हैं जो लोहे के भी हो सकते हैं और बांस के हो सकते हैं सामने सडक पर कुछ सामान फैला हुआ है चारो तरफ से।

एक पर्दा लगाया है पर्दा रंगीन लगाया है पर्दे के पर--

व्हीलर के ठीक सामने रैक बने हैं दोनों तरफ दीवाले हैं।

रोशनी के लिए कुछ फर्स्ट में छेद किया।

जो कुछ बोलना चाह रहा है दूसरे व्यक्ति के नि फोटोग्राफर है जो फोटोग्राफी कर रहा है। पीछे स्टूल है व्हाइट कलर के स्टूल है। पीछे --

दूसरी तरफ ब्लैक ब्लैक कुछ दिखाई दे रहा है ऊपर--

पौधे दिखाई दे रहे हैं पेड़ भी हैं अह रोड की दूसरी तरफ बिजली के खंभे भी हैं ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा--

जमीन पर रेड कलर की कार्पेट बिछी हुई है दोनों।

दोनों तरफ से औरतें खड़ी हैं जो हाथ जोड़ के--

कुछ जमीन पर भी फैले हुए हैं रंग बिरंग के समान है ये सब।

ये बहुत बड़ा हॉल है हॉल में फोर व्हीलर रखे गए हैं यह गाड़ियों का शोरूम हो सकता है ऊपर लाइट भी जल रही है।